पीछे का जो दृश्य है वो देखने में पूरा पहाड़ी जैसा लग रहा है।

ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यहां पे बहुत सारे घास उगे हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक मंदिर के पास का फोटो है यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

यहां पे सामने एक स्काई कलर का कपड़ा पहने हुए अंकल नज़र है जिनके हाथ में हवा मिठाई है।

जो दृश्य है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यहां एक बालाजी स्वीट्स बोल के एक मिठाई का भी दुकान है।

सामान के बंडल बांध के रखे हुए हैं जिसका कलर ऊपर से --

के अलावा यहां पे एक झाड़ू रखा हुआ है यहां पे नीचे में और भी कुछ सामाने रखे गए हैं।

यहां पे सामने में कांच का रैक लगा हुआ है जिसपे बहुत सारे अलग-अलग सामाने रखे गए हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक गांव का पिक्चर लग रहा है जो कि देखने में--

का जो चेयर है उसको चारों तरफ से एक धागे से बांधा गया है --

के अलावा यहाँ पे और एक पतला सा भी पेड़ है जिस पेड़ पे श्री राम लिखा हुआ है।

अंदर में लाइट जल रही है यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

और यहां पे जो है एक नेट का बहोत बड़ा सा--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह औरंगाबाद के किसी जगह का फोटो है यहां पे --

ब्राउन कलर का और एक ब्लैक कलर का चेयर रखा हुआ है।

यहां पे डॉक्टर जो है इस्तेमाल करने वाले बहुत से सामान भी रखे गए हैं और ये --

बडे़ लोग अच्छे लोग आकर बैठे हुए हैं सब सज धजके आये हैं --

यहां पे सामने में पंचायत कैफे एंड रेस्टोरेंट का एक पोस्टर लगा हुआ है।